येलो का येलो और रेड का पेंट हुआ है बिल्डिंग में --

यहाँ पे गणेश भगवान का मूर्ति है और यहाँ पे बहुत सारे लोग साइड में खड़ा हो के फोटो खिंचा रहा हैं और यहाँ पे बहुत अच्छे से सजाया गया है गोल्डन कलर से और भगव भगवान जी का मूर्ति पिंक कलर में है और भगवान जी के आ भगवान जी को फूल भी चढ़ा हुआ हैं।

और यहाँ पे तीनठो अपार्टमेंट हैं और टी तीनो बगल में सटे-सटे अपार्टमेंट हैं और अपार्टमेंट सारा वाइट कलर का हैं और अपार्टमेंट के ऊपर ए.सी. भी लगा हुआ है।

यहाँ पे अमर शहीद जवाब साहनी का मूर्ति बनाया गया है और मूर्ति को माला भी पहनाया गया है और मूर्ति का जो शर्ट बना हुआ वो व्हाइट कलर का और जो सब लिखा हुआ वो भी व्हाइट कलर का है उसके ऊपर एक छत टाइप का बनाया गया है ।

यहाँ पे पार्क है पार्क के पास पेड़ लगा हुआ है पेड़ के नीचे वाइट कलर का पेंट हुआ हुआ है उसके बगल में बाइक भी लगा हुआ है और एक छोटा सा घर का घर भी बना हुआ है घर में गेट है येल्लो कलर का और घर के बाहर सीढ़ी है लगा हुआ है छज्जा के ऊपर।

यहाँ पे मूर्ति बना हुआ है। उसके बगल में एक छोटा सा मूर्ति है। उसके भी बगल में एक छोटा सा मूर्ति है। उसके बगल में कुछ पौधा है।

एक व्यक्ति अपना बाल को दिखा रहा है और यहाँ पे बाल में लाइन भी मरवाया हुआ है और बाल को अच्छे तरीके से झारा हुआ भी है ।